यह एक स्टैंड के टाइप में लग रही है इसमें गाड़ी बहुत अच्छे तरीके से रखी गई है ताकि किसी भी व्यक्ति को असुविधा उत्पन्न ना हो अपनी-अपनी गाड़ी पहचान करने में एवं निकालने में ।

अच्छे तरीके से बेंच डेस्क टेबल एवं ब्लैक बोर्ड को सजाया गया जिसे विद्यार्थी को पढ़ने में कोई तरह का परेशानी ना हो एवं आगे कि तरफ ब्लैक बोर्ड देखने में कोई परेशानी ना होगी।

यह एक ब्यूटी यह एक ब्यूटी पार्लर का सीन नजर आ रहा है जिसमे ब्यूटी पार्लर ब्यूटीसियन बैठ कर बड़े अच्छे तरीके से इसने --